और भी कुछ वहाँ पे शर्ट्स दिखाई दे रहे हैं और कबर्डस मे दिख रहे हैं | वही लाइटस वहाँ पे दिख रहे है और स्प्रिंग जो है वो व्हाइट कलर का--

और कुछ कार दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है और वहाँ पर रिक्शा नज़र आ रही है और आसमान साफ है।

इलेक्ट्रिक वायर नजर आ रहे है शेड दिखाई दे रहा है और आसमान साफ दिख रहा है।

और एक मंदिर दिख रहा है जिसका दिवार है वो गोल्डन कलर से ये किया गया है एक स्तम्भ दिखा रहा है वो भी गोल्डन कलर से रंगा हुआ है कुछ मूर्तियाँ दिख रही हैं वहाँ पर ऊपर में |

और एक बैंक दिख रहा है और कस्टमर्स वहां पर काफी लाइन में खड़े हैं बाहर और एक व्यक्ति बाइक सवार नजर आ रहा है वही --

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर से रंगी है और वाइट कलर से रंगी है और ट्रासफोर्मर वहाँं पर दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रिक वायरस् नज़र आ रहे है शॉपस दिखाई दे रहे है।

और दोनो तरफ काफी अच्छा आकर्षक माना जा रहा है और अंदर का भी जो है वो काफी आकर्षित दिख रहा है और आसमान भी साफ --